लायब्ररी बनी हुई दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे किताबे जमी हुई दिखाई दे रही है।

एक वाइट कलर की प्लेट दिखाई दे रही है उसमें एक बॉल रखा हुआ है बाल में तीन वाली आइसक्रीम रखी हुई दिखाई दे रही है और तीन चम्मच लगी हुई दिखाई दे रही है और आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रही है।

एटीएम एंड मेमोरी बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके नीचे बहुत सारे आदमी डरे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है नदी पर एक नाव है और बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और पत्थर रखे हुए दिखाई रहे हैं। पेड दिखाई दे रहे हैं।

में मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा जो बाल कटवा रहा टी.व्ही. दिखाई दे रही एक आदमी बाल काट रहा लगी हुई दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही उसमे बहुत सारे बूके रखी हुई है दो आदमी बाहर खड़े है।